इस तस्वीर में एक गार्डन है।

और एक टेबल के नीचे एक डम्बल रखा हुआ है।

रेस्टोरेंट के अंदर फॉर सीलिंग है जो अह उसमें लाइट लगा हुआ है।

पार्क के अंदर एक ब्राउन कलर का दिवाल भी है।

सड़क के उस पार एक कैफे है।

दुकान के अंदर कई सारे लाइटें लगे हुए हैं जिससे चमक बाहर तक आ रही है।

रेस्टोरेंट के अंदर कई सारे टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं।

टेबल के बगल में दो आदमी खड़े हुए हैं।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर करीमनगर डेरी लिखा हुआ है और उसके नीचे डिपार्टमेंटल डेरी पार्लर लिखा हुआ है।

चाय की दुकान है जिसका नाम गजल कूल कॉर्नर है।

इस दुकान के बाहर एक रेड कलर का मग्गा भी एक रखा हुआ है।

गाड़ी के अगल बगल दो टायर रखे हुए हैं।

टेबल पर कुछ खाने पीने का सामग्री भी रखा हुआ है।

लड़की के पीछे एक रैक है।

बैनर पर गोमती नगर पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है।

पैलेस का कलर ब्राउन और रेड कलर का है।

जिसके बीच से एक रास्ता गया है कॉलेज के लिए।

बगल में सीढ़ी लगी हुई है।

और के बाहर दो बाइक एक लड़का खड़े हुए हैं।

स्टेज के ऊपर एक महिला नृत्य कर रही है।

क्लासरूम के अंदर एक ब्लैक बोर्ड है।

डिब्बों में कुछ बच्चे बैठ हुए हैं।

गार्डन के अंदर कई सारे कई तरह के गमले रखे हुए हैं।

इस मेट्रो स्टेशन के नीचे एक रोड है।

दो तीन टेंपो दिख भी रहे हैं जिसका कलर येलो और ब्लैक है।